ये एक चार चक्का जिसके आगे भी एक व्हाइट कलर का गाड़ी है जो अह दो आदमी है नीचे गाड़ी नंबर आई ट्वेन्टी है जिसके चक्का चार है।

एक टेबल जिसके चार कुर्सी हैं आपके एक बच्चे है जो एक लेकर जा रहा है और--

एक बंधा का भी जिसमें मंडी है जिसमें एक आदमी पत्त सब्जी केला टमाटर--

व्हाइट ग्रीन और एक घड़ी है जिसके आगे एक दरवाजा जिसे वो काले रंग के सीसा है और एक चश्मा रखा हुआ जिसका एक फ्रेम है।

इंजन खुला हुआ है इसके अंदर जनरेटर है जो एक आदमी नीचे लेके हाथ में खड़ा हुआ है जो ट्रैक्टर खोल रहा है।

नीचे कॉपी कलम रजिस्टर पेन में ज्योमेट्री बॉक्स फेवीक्विक जो है सब दुकान में रखा हुआ है जो अपना बचने का--

बरसाही लड्डू जिसके ऊपर डब्बा रखा हुआ है एक बिजली बिलर लगा हुआ है जिसके--

दो दो से स्टाफ हैं कुर्सी कुर्सी के ऊपर टेबल है और आगे एक मिठाई रखा हुआ है जो लड्डू है।

घाट है देखिए बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और ये पंछी पानी में है तैर रहा की उड़ रहा है दो चार उड़ रहे है जिसके आगे गुम्मद बना हुआ--

ये है सहारे जिसे टेंपू मोटरसाइकिल एक फिर और बारिश का मौसम है जो रस्ते प पूरा पानी कैला है।

जो एक फादर जिसको पूरा बंडी पहना हुआ है गर्दन में लपटे हुए हैं।

कपड़ा टंगा हुआ है जो लड़की जो पहनी हुई घाघरा पहनी हुई है जिसके ऊपर गर्दन पर माला पहनी हुई है।

दुर्गा पूजा हो रहा है जो आगे पीछे दुर्गा जी शंकर जी और सरस्वती जी हैं जिससे आगे दस लड़ चार पांच लड़--

पीला कलर का पंडाल पन्नी टंगा हुआ है ड्राम रखा हुआ पानी ओनी का बॉक्स लाल कलर का रखा हुआ है।

यह बुलेट का शोरूम है जो बुलेट है लाल रंग का है जो कि हैंडल में--

सब खड़े हैं गाड़ी में लाइन लगा हुआ है दो चक्का है तीन चक्का है दो मोटरसाइकिल चार मोटरसाइकि--

जो लाल रंग का है जिसमें आगे मोटरसाइकिल जिस पर आदमी बैठा हुआ है जो आए हुए--

एक शादी का स्टेज बना हुआ है जो हंस बना हुआ जिसमें फूल बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जो--

ये गली जिस गली में थोड़ा एक बी बीच में एक बिल्डिंग खड़ा है जो गली के बाहर बहुत सारे आदमी खड़े मोटरसाइकिल ले के जा रहे हैं।

ये पार्क है जो कि बना हुआ है जिसपे लड़की ऊपर से नीचे आ रही है।

यह स्टेट बैंक के ए_ टी_ एम_ है जिसमें वो दो चार आदमी जो हैं।

एक खड़ी है जिसमें नाव स्केटिंग कर रहा है सब लोग।

मेदिस मोजा पहनु हुई है जो जूत्ती ब्लैक कलर का है ड्रेस है बुलु कलर का दो चोटी बानी हुई है एक बच्चा सो रही है।

जिसमें चाय एवं अ तंदूरी चाय स्पलिस्ट लिखा हुआ रखा ग रखा हुआ है जिसमें चाय का पोस्टर बना हुआ है।

टेंपो जा रहा है जो बारिश हो रहा है जिसकी पानी बहुत सब जिसके आगे मोटर साइकिल रुका हुआ है।

रोड पर गाड़ी जा रहा है जिसमें दो गाड़ी जा रही है चार पांच गाड़ी जो खड़े हैं जिस के बगल में एक--